इसमें एक दो तीन ऊपर पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं औरतें भी खड़ी हैं और यहाँ पर शीशा लगा यहाँ पर --

तथा गेट के पल्ली साइड बच्चे खेल रहे हैं तथा उस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लगा हुआ है।

तथा उन बिल्डिंगों के बहुत सारी विंडोज भी लगी हुई हैं तथा यहां पर आशी--

की फोटो लग रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यू_को बैंक --

पांच छह बाइक खड़े है और एक गाड़ी खड़ी है यहां पर दो देखिए औरत खड़ी है।

हर आदमी के पास वो यह सामान सा भी बड़ा है।

यहां पर हर तरफ रेता ही रेता फैला हुआ उसके आसपास कुछ कुछ खिड़कियां वगैरह सी लगी हुई हैं तथा उस ऊपर आग बल रही है।

और यहां पर एक पेंप्लेट भी लगा हुआ है यहां पर कुछ लिखा हुआ है।